एक सफेद गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

दीवार भी है जो सफेद और लाल रंग का है लाइट्स भी लगे हुए हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक सफेद और काले रंग का बकरी दिखाई दे रहा है।

शुरू में पहाड़ का पत्थर भी दिखाई दे रहा है ऊंचा से।

एक सामने में एक नीला सफेद और नारंगी रंग का बोट दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बड़ा सा घर दिख रहा है।

पेड़ भी है और नीला आसमान भी रास्ता भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में ढेर सारे संतरे के फल दिख रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा बिस्तर बना हुआ दिख रहा--

ऊपर सफेद रंग है नीचे काला और लाल रंग का उसके ऊपर मशीन भी चल रही है दीवार ईटों का है।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

पास में एक चश्मा भी रखा हुआ हैं। चॉपस्टिक भी हैं चम्मच भी हैं और टिशू भी हैं।

सामने में व्हाइट बोर्डस भी लगे हुए है। एक मे जनरल हॉस्पिटल आलो लिखा हुआ है और दूसरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और तीसरा खाली है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है जो लाल और नीले रंग का है।

एक कपड़ा भी टंगा हुआ है।

छोटे छोटे बॉक्स भी हैं जो सफेद और हरा रंग का है। कोल्ड्रिंक्स भी है।

दीवार पर स्कैनर भी लगा हुआ है।

म्यूजियम कॉम होम स्टे मार्शिंग लिखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा कमरा दिख है।

मुझे इस तस्वीर में बड़ा सा कमरा दिखाई दे रहा है पर्दा भी--

चेयर और टेबल भी दिख रहा है उसके ऊपर दो पानी बोतल टिशू पेपर और ये हरा रंग का है।

सामने बड़ा सा पेड़ भी है।

ऊपर में रॉयल ओक रेस्रा लिखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक सफेद रंग का बड़ा सा नाव दिख रहा है।

ऊपर आसमान भी है सूरज भी दिख रहा है।

नदी पर सूरज की परछाई भी दिख रही है।

फूलपानी के साथ भी भी लगे हुए है।

दीवार का रंग काला है। मनुष्य भी है। फूल भी गमला भी है। टेबल और चेयर भी है।

ऊपर लाइट्स और पंखे लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक कंप्यूटर रूम दिख रहा है चेयर भी दो है दो कंप्यूटर भी है।

सी_पी_यू और प्रिंटर भी है।

एक बड़ा सफेद रंग का घर भी दिख रहा है सामने में गेट भी ऊपर में क्रॉस साइन बना हुआ--

पास में एक दीवार भी है फेसिन्ग के साथ ढेर सारे पेड़ पौधे--

मुझे इस तस्वीर में नाट्यगृह पुस्तक पहने हुए मनुष्य दिख रहे --

सामने एक वाइस स्विच बॉक्स भी है और वायर्स --

यहां सारे पोस्टर भी लगे हुए है और साथ में मेडिसिन बॉक्स भी है और दरवाजा भी है।

सामने में सफेद कागज पर लैब जांच भी लिखा--

चेयर भी है लकड़ी का बूरा भी आग भी जला हुआ है।

सामने नदी भी है ढ़ेर सारे पेड़ जंगल दिख रहे हैं।

पेड़ पहाड़ के ऊपर सफेद आसमान भी है।